यहाँ एक ग्राउंड का दृस्य है। ग्राउंड में सुबह के समय --

यह एक क्लासरूम का दृश्य है। क्लासरूम में छात्र एवं छात्राएं बैठकर पढाई कर रही हैं। यहाँ पर --

किराने की दुकान पर ग्रॉसरिस अनाज दाल चावल --